--नीचे सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं अंदर गाड़ी के पीछे काफी सारी मशीन लगी हुई है और एक --

सामने एक पेंटिंग लगी हुई है बड़ा पर्दा लगा हुआ है एक दीवार में सीनरी लगी हुई है और एक बोर्ड भी दिखाई दे--

एक दुकान है इसमें काफी ड्रेस रखी स्वेटर रखी हुई है कुछ स्वेटर बड़ी दिखाई दे रही हैं ।

एक गोभी दिखा ए-ए-एक स्टैंड है जिसमें गोभी रखी हुई है कच्चे केले रखे हुए हैं।

कुछ लोग दाम दे रहे है एक मेम खड़ी है जो उन्हें उंगली दिखा रही है एक ग्राउंड है और उसमें काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिख--

एक दुकान है जिसमें कॉफी शॉप की दुकान है जो दो मंज़िलों की है सेकंड मंजिल मे काफी सारे तार दिखाई दे रहे है।